एक गाय है। बछड़ा भी है। एक गाय ने बछड़ा को दूध पीला रही है। वो --

ट्रैन पटरी है और बोहोत सारी ट्रेन पटरी है।